जानमाज़ बिछी हुई है।

पेड़ लगे हुए है।

किताबें रखी हुई हैं।

इस चित्र में--

लोग दिख रहे हैं।

ऑटो दिख रहे हैं।

पेड़ दिख रहे हैं।

जिनका रंग हरा है।

एक आदमी दिख रहा है।

आसमान नीला है।

पार्क दिख रहा है।

ए फाइव लिखा हुआ है।

कुछ लोग खड़े हैं।

इस चित्र में एक होटल दिख रहा है।

सोफे दिखाई दे रहे हैं।

नीले कांच लगे हुए हैं।

पेट्रोल पंप दिख रहा है।

गार्डन दिख रहा है।